यहाँ एक रोड बनी है।

और गार्डन के बगल में बिल्डिंग है और बिल्डिंग में ए.सी. लगी है ए.सी. का रंग सफेद है।